यहाँ पे एक लड़का स्टेज पे गाना गा रहा है।

कैमरे से लड़के की फोटो ले रहा है।

पीला रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

पहाड़ भूरे रंग का है पहाड़ पे कुछ भूरे - भूरे घास जमे हुए है।

उसके सामने एक होम लोन का बैनर टंगा हुआ हैं।

और ऊपर से एक तार भी गया हुआ है।

यहाँ पे कुछ गाड़ियां रोड पर चल रही है जिसमे से कुछ ऑटो और - कुछ ई रिक्शे है।